यह एक गार्डन टाइप का लग रहा है जिसे बच्चों के लिए खेलने का जो गार्डन होता है उस टाइप से अह पिलर्स दिखाई दे रहे हैं।

हाथ में जान की दगली ली हुई है डंडी जैसी ली हुई है पीला पत्ता दिख रहा है खारा है जान का पत्ता--

उधर एक लड़के की जेब में कुछ रखा हुआ दिख रहा है सब ने कुर्ते पहने--

दी विनायक बड़ा गणपति का मंदिर है अं साइड में राम मंदिर दिखाई दे रहा है।

और शटर लगी हुई दिखाई दे रही है।

पीछे जो जो हवा पवन वाली जो चक्की जिसको बोलते हैं जो हवा में घूमती है वो दिखाई दे रही है।

अह केमिकल मशीन के ओ दिख रही है।

यह एक अअ कंपनी दिख रही है परफ्यूम की।

यह एक साइबर जैसा दिख रही है।

इधर एक बाल्टी जैसी दिखाई दे रही है।

और तेल का डब्बा आता उसको बाल्टी जैसा--

ऊपर कोई कोई सी खिड़कियां खुली हुई दिखाई दे रही है।

अंधेरा दिख रहा है मटके दिखाई दे रहे हैं।

दो लोटे ग्लास दिख रहे उसपे गमले दिखाई दे रहे ह डस्टबिन है एक आदमी खड़ा है।

यह एक शॉप जैसा दिख रहा है।

यह एक दरवाजो का कारखाना दिख रहा है।

और भी क्रेने पीछे खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

फोटो खींच रहे हैं नोटिस पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं।

इधर टेबल पर बुके जैसा दिख रहा है नीचे पॉट्स और फूलों की रंगोली दिख रही है डब्बा दिख रहा खाली।

यह एक हॉस्पिटल जैसा दिख रहा है जूते चप्पल दिखाई दे रहे हैं जहां साइड में लाइटिंग दिख रही है।

पीछे भी कुछ रखा हुआ दिख रहा टेबल वगैरह नीचे पुस्टे वगैरह दिखाई दे रहे हैं।

घास फूस दिखाई दे रही है ।